चित्र में एक हरे रंग का मंडी आगमन पर धन्यवाद बोर्ड लगा हुआ है।

खड़ा है जिसके गले में ऑरेंज कलर का मक्कल पड़ा है।

पीले लाल रंग का छतरी नुमा गुंबद बना हुआ है।

एक व्यक्ति ऑरेंज कलर की टीशर्ट पहने खड़ा है जो फोन पर बात कर रहा है।

एक व्यक्ति बाइक से गेट के अंदर जा रहा है।

बेड पर सफेद और ब्राउन कलर के तकिए लगे हुए हैं।

ओ पिंक कलर की शर्ट और सर पर हेलमेट लगाए हुए है काला।

ऑरेंज रंग की दीवार नजर आ रही है उसके आगे एक सफेद प--

दृश्य में एक रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है।

और स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर आ रही है।